उसमें एक सड़क पे एक व्यक्ति पैदल चलके जा रहा है।

इस तस्वीर में एक पिंजरे में बंद पंछियों को दिखाया गया है।

इस तस्वीर में एक सुरमई रंग की गाड़ी को दिखाया गया है।

बागीचे में एक बहुत पुराना और कुछ नए पेड़-पौधे भी लगे हैं।

और नारंगी रंग की सिर पर पगड़ी पहनी है।

वो खेत में धान की बुवाई करने के लिए आया है।

उसके उधान में बहुत सारी कुर्सियाँ और मेज भी रखे हैं।

और उसपे सीमेंट से एक पेड़ जैसी आकृति बनी है जो की बहुत आकर्षक लग रही है।